यहां बाजार दिख रही है।

दे रही है जिस और एक कुर्सी में एक लड़का है।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां दिखा--

मुझे यहां पर का तुलने बाजी--

छे लोग बैठे हुए हैं मु--

और पोस्टर दिखाई दे रहे है।

है जहां पर कुछ--

दे रहा हैं और पोस्टर लगा--

मुझे यहां पर जिम --

बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है। जह--

मुझे यहां पर कंप्यूटर --

कि क्लास दिख रही है।